एक आदमी कुत्ते को पकड़े हुए खड़ा नजर--

बहोत सारे पेड़ पौधे दिखाई दे रहें हैं।

सेल्फी लेता हुआ नजर--

स्कूल में प्रोजेक्ट बना रहे हैं।

इस फोटो में दिखाया गया है कि यहां पर एक आदमी--

इस फोटो में एक बड़ी सी सुंदर सी शॉप --

की यहां पर एक शॉप है जिस पर--

बाहर की तरफ बहोत सारी बुक रखें हुए--

इस फोटो में दिखाया गया है कि यहां पर बहोत सारे गमले--